इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिखाया गया है।

एक बड़ा सा घर भी है।

इस फोटो में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है जो कि एक शीशा का है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे रिक्शे भी हैं।

कंस्ट्रक्शन साइट के पास बहुत सारे पेड़ उगाए गए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक रूम दिख रहा है जो की ब्लू कलर में है।

इमेज मे बाहर बहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है।

तस्वीर में मुझे एक घर दिख रहा है।

कमरे के अंदर टेबल और चेयर भी रखा गया है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

एक इंसान भी है। पीछे में बड़े बड़े बिल्डिंगे भी हैं।

जैसे कि बड़े सोफा छोटे सोफा भी रखे गए हैं।

सोफा के ऊपर भी रखा गया है।

वाइन के बगल में बहुत सारे तरह के सॉस रखे गए है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे फ्लावर पॉट्स भी लगाए हुए है।

ट्रैक के सामने एक दुकान भी लगाया हुआ है।